लोहे का पाइप हैं उसमे बहुत ज्यादा सुन --

बहुत बड़ा एक पो लोहे का पोल दिख रहा है बहुत तार दिख रहा है ऊपर में--

ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा है जिसमें खम्बा है और देखने में अलग-अलग तरीके से बना हुआ है ।

एक आदमी जो हैं बहोत ज्यादा ऊंचाई पे है।

ऐसा लग रहा है और रंग-बिरंगी लाल है ग्रीन है ब्लू है और जे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है उसके बगल में जैसा लग रहा है की पहाड़ है।

जैसा लग रहा है फल मार्केट ही है।

रंग-बिरंगी ये जो हैं बहुत ही सुंदर लग रहा हैं जितना भी तारीफ करू कम हैं।

जो चीज है ऐसा लग रहा है पानी बह रहा है और ऊपर में जो है हरा-भरा सा दिख रहा है।

जिसमे लग रहा है कि कोई कप कॉफ़ी पिने का हैं कोई चाय बहुत ही रंग बिरंगी कॉफ़ी पिने का बहुत ही सुंन्दर सुंन्दर कप रखा हुआ है जैसे बहुत बड़ा दुकान है।

यहाँ जो है ऐसा लग रहा है की देहात हैं।

यह जो है बहुत सारा गाड़ी दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा शहर है।